कर रहे हैं यह बहुत ही मेहनत से काम कर कर के घर को बनाते हैं यह घर बहुत ही अच्छी से बनाई जाती है।

यह नदी के बीच का पुल है यह पुल बहुत ही लंबा है तथा यह पुल बहुत ही चोंड़ा भी है।

सारे पौधे भी उग गये हैं और इसके साइड में एक मैदान भी है छोटा सा --